और बहुत सारे पौधा लगा हुआ है जिसमें एक केला का पेड़ भी है और बहुत सारे पेड हैं।

यहां पे टेबल पे येलो कलर का कुछ स्टैंड टाइप रखा हुआ है और --

हुआ है और साइड में दो-तीन पेड है जो कि दो पेड सूखा हुआ हैबाकी सब हरा भरा है पीछे में वाइट कलर का घर --

सामने में वाइट कलर का बाउंड्री किया हुआ हैऔर रेड कलर का एक बाल्टी वाला स्टेन रखा हुआ है।

इस पिक्चर में हमको एक तो मस्जिद दिख रहा है मजीद जो है वाइट कलर का हैऔर --

और बगल में मिक्की माउस वाला झूला भी है उस पे भी बहोत सारे बच्चे हैं और साइड में बहोत सारे बच्चे के पेरेंट्स भी खड़े हैं।

इस पिक्चर में हमको बड़ा सा मछली दिख रहा है जो कि ठेला पर रखा हुआ है।